ये एक सुमिंग पूल लग रहा है। जहां पर बहुत प्यारी नदी है।

ये यहाँ पर लाइटे है बहोत सुंदर सुंदर।

होल है या कोई बिल्डिंग लग रही हैं इसके बाहर बहोत सारी स्कूटी और बाइक खड़ी है।

ये डोमिनोज जैसा लग रहा है बहोत ही सुन्दर है।

हरे रंग का कारपेट है लाल रंग का कारपेट है एक डी_जे है।

बहोत प्यारा है बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है यहां पर एक्सपेंसिव खाना है।

पत्थर का काम कर रहे हैं दरवाजे बना रहे हैं।

यह बहुत ही टेस्टी लग रहा है इसके ऊपर भी--

यह घर बहोत प्यारा है दो मंजिल का घर है जीसके के सामने बहोत सारे पेड़ हैं।

यह बहुत ही सुंदर है यहां बहुत अच्छी सजावट है बहुत प्यारे प्यारे।

ये सर्दी का टाइम है पंखा बंद है।

एक घर है बिजली के तार है।

बहोत बड़े बड़े पार्क हैं बहोत ही सुंदर लग रहा है।

पीछे पेड़ पौधे हैं बहोत ही अच्छा लग रहा है।